एक सोफा रखा हुआ है जिसमें एक बैग राखी हुई है।

यह पार्क है जहां पे डिजाइन बनी हुई है पौधों से उम पक्षियों के चित्र बनाए गए हैं पौधों से और बीच में भी--

और एक कुछ बना रहे हैं कुछ लोग देख रहे हैं यहां पे काफी मेंबर है यहां पे।

पुश सजावट बगल में की गई है और उपरमें यहाँ सोलर लाईट लगा हुआ है।

और दो लाईट खम्बे पे लगी हुई है और यहाँ लोहे के कुछ पंडाल जैसा बन रहा है।

समझ में दूर का नहीं आ रहा यहां पे कूलर बाहर से लगे हुए हैं एक छत--

यहां पे काफी लोग खड़े हुए हैं ये भी एक पार्किंग जैसे ही जगह है।

यहां पे आ जा रहे हैं काफी दुकान भी हैं चारों साइड दुकानें बनी हुई है यहां पे और यहां का--

यह एक मिठाई की शॉप है और नमकीन वगैरह भी यहां रखे हुए हैं नमकीन वाला आइटम भी है और मिठाइयां लड्डू--

डाल रहे है जो एक लगा रहता है उ डालने वाला काफी काल--

यह एक वाटर पार्क है यहां पे लोग स्विमिंग कर रहे हैं जैसे कि--

ऊपर लाइटिंग बोहोत बड़ी बड़ी लाइटिंग लगी हुई है और यहाँ पे नज़ारा यहाँ का --

यह पेट्रोल टंकी है यहां पे लोग पेट्रोल डलवा रे हैं च फोर व्हीलर भी खड़ी है टू व्हीलर में भी लोग डलवा रे हैं स्कूटी है।

यहां पे एक खराब कार खड़ी हुई है जिसे आगे का पूरा सिस्टम निकाल दिया गया है और अंदर का इंजन दिख रहा है।

यहां पे एक उल्लू बनाया गया है जोकि पार्किंग सिस्टम है यहां पार्क में--

और काफी दो तीन बाइक खड़ी हुई है और कुछ यहाँ पर खुदाई हुई है जिसमे --

यहां पे नीचे से पानी जा रहा है ऊपर से बहुत बड़ी मोटी सी रोड बनी हुई है ब्रिज पुल जिसे बोलते हैं।

बगल में बेडरूम भी है यहां पे थोडा सा दिख रहा है ये किसी का घर है।